इस तस्वीर के अंदर ऊपर बादल दिख रहा है बादल के अंदर--

बाहर बहोत सारे जूते पड़े हैं पीछे दो मोटरसाइकिल खड़ी है मोटरसाइकिल के पास भी एक आदमी खड़ा है।

अंदर एक आदमी जा रहा है पीछे बैग डाला हुआ है ब्लैक कलर का बैग में पानी पीने वाली बोतल है।

और पीछे बहोत ज्यादा वृक्ष उगे हुए हैं हरे हरे कलर के।

इस फोटो में सामने एक मूर्ति लगी हुई है मूर्ति के ऊपर मालाएं पहनी हुई हुई है महेल ये मूर्ति हनुमान जी की है।